और हरे रंग का पेड़-पौधा है और ये बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

आस-पास बहोत अच्छा सजा हुआ है उसके पास एक व्यक्ति बैठा है ब्लैक कलर में इधर एक भाई साहब खुर्शी लगाये बैठे हैं और अंदर सफ़ेद कलर फूलो से सजा हुआ --

ये बंधन बैंक है यहां बहुत सारी बाइके हैं बहुत सारा व्यक्ति खड़े हैं।

ये बंधन बैंक जवाहर लाल जी की है इनमें बहुत सारे फल की सब्जी टोकरी गाड़ियां खड़ी हैं।

यह महिला निट्रया के पोजीशन में खड़ी हुई है नृत्यु कर रही थी।

ये एक सलून है| इन भाई साहब की कटिंग हैप्पी कटिंग हो रही है| लोल लोरियल का ये पहन रखा है।

इन भाई साहब की भी शर्ट ब्लैक एंड वाइट है| पीछे गंजे में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यह किसी व्यक्ति का बंगलों या मकान है आस-पास हरी-भरी गार्डन है घास काटने की मशीन रखी हुई है।

और भी कुछ यहां ताले लगे हुए दो ये पीले कलर का बॉक्स हैं।